इनको टेबल के ऊपर रखा गया है ऊपर छत पर लाइट्स --

यह पुराने जमाने की मूर्तियों को शोकेश में रखा हुआ है।

सभी इन्हे गौर से देख रहे हैं।

दो आदमियों ने कैप लगाई हुई--

यशु मसीह की मूर्ति को पकड़ा हुआ है--

सारे मैट अलग अलग रंगों के हैं लोगों के पास अपनी अपनी--

आदमी ने माइक पकड़ा हुआ है।

शोकेस में तीन मूर्तियां रखें हुए हैं।

रेट के टैग लगाए हुए हैं।

यह पैलेस की तस्वीर हैं।